पोधे है कुछ लाल रंग की है कोई गुलाबी कलर की है।

कोई सफेद कलर की है काफी अच्छे लग रहे देखने मे पेड़ पोधे --

बैठे हुए हैं हाथ में मोबाइल लिये।

दो आदमी नजर आ रहे हैं। एक ने सफेद कलर के कपड़े पहने है और एक ने लाल रंग के पहने है।

और इस बिल्डिंग का नाम है एसी कॉम्प्लेक्स । काफी बड़ा है। अच्छा लग रहा है देखने में और आसमान भी काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में। यहाँ पे कोई आदमी नजर नहीं आ रहे हैं।

आज बहोत सारी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। कुछ बड़े - बड़े पेड़ - पौधे भी दिखाई दे रही हैं और रास्ते के राइट साइड में एक बाइक नज़र आ रही है।

और यहा इसके कलर है दुकान की व्हाइट रंग की है बहुत सारी लाइटे लगी हुई हैं बहुत सीलापे बनी हुई हैं पर कोई आदमी यहा पे दिख नहीं रही शॉप में --

और इस यहा पे इस नदी को घेरा गया है पिलर से उसके लेफ्ट साइड मे ऐसा लग रहा है कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है कुछ मशीने हैं ।